और आसपास कुछ गाड़ियां भी हैं।

यहां पर कुछ कपड़े रखे गए हैं।

इनमें से कुछ आदमियों ने चश्मे--

चढ़ रही है बिल्डिंग पर कुछ पाइपे लगाई गई है।

और यहां एक पोस्टर भी लगाया हुआ है।

पीछे कुछ बोरियां रखी गई हैं और यहां पर--

यहां पर एक आदमी जिसकी सब्जी की दुकान है।